एक सामने की ओर एक पत्थर का गेट बना हुआ है जिसमें सामने एक बहुत बड़ा पत्थर का एक स्टेचू सामने की ओर है। --

लेफ्ट साइड में दीवाल में बिग लिखा हुआ है।

अंडे वो जो पीला एंड ब्लैक कलर के शर्ट पहने बहुत सारे एक आदमी और खड़े हुये हैं जिसके बाल बना रहे सामने एक कुर्सी में काला कलर के कुर्सी में आदमी बैठा हुआ है।

सामने एक बहुत बड़ा मैदान है जिसमे बहुत सारा आदमी खेल कूद रहे है हाथ में बैट भी है एक झन के राइट साइड के लाल कलर का गंज--

पहना हुआ है बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़ है एक लेम्प बॉल बहुत बड़ा पोल के ऊपर लैंप लगा हुआ है बहुत सारे एंड एक आदमी चल गया और एक आदमी लेफ्ट साइड में एक साइकिल में दो झन है।

खड़े हुए स्कूटी खड़े हुए लाल कलर के बाइक खड़े हुए ब्लू कलर के बाइक है एक काला कलर का स्कूटी है सामने एक बहुत सारी खिड़कियां है जो--

एक गैरेज का दुकान है जिसमे बहुत सारे हैलमेट लगे हुए है स्टैंड में एंड बाइक है चार बाइक खड़े हुए है सामने की ओर --

न लिया हुआ है सामने का बहुत बड़े-बड़े बिल्डिंग है गुलाबी रंग केग्रीन रंग के है।

एंड एक पैट्रोल पंप है लेफ्ट साइड की और बहुत सारे आदमी जा रही है आ रही है पेट्रोल --

एक जंजीर का ये बनाया गया है जिसमें बहुत सारे गाछ --

जो ब्लैक कलर का पूरा पैंट है वाइट शर्ट कलर का पैंट पहन के ब्लैक कलर का बैग लिए हुए --

यहाँ पे एक मूर्ति मूर्ति भाषण किया जा रहा है जिसमें बहुत सारे डिज़ाइन किये गए है ग्रीन एंड --